सामने बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं और पीछे दीवाल उठी हुई है।

और उसके ऊपर पोस्टर लगा हुआ है के_एफ_सी का--

कुछ बड़े पेड़ कुछ छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ का कलर हरा गुलाबी है।

इस तस्वीर में मुझे एक लाल कलर की दिवाल दिख रही है।

और एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कुछ।

स्विमिंग पूल के किनारे लोहे के जाल लगा हुआ है किनारे।

इसमें न्यूट्रेला का पोस्टर लगा हुआ है।

नीचे एक लंबा सोफा पड़ा है जिस पे लाल कलर की कवर चढ़ा हुआ है।

दुकान दिख रही है दुकान के बाहर एक महिला खड़ी है।

पंखा लगा हुआ है और लाइटें जल रही है सफ़ेद कलर की।

और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं पूजा करते--

पर मारुति सुजुकी एरीना लिखा हुआ है।

जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं।

का कलर सफेद पीला गुलाबी है।

एक लोहे का बड़ा सा गोल शेप में रखा हुआ है।

यह तस्वीर एक पार्क की है जिसमें बहोत सारे झूले दिखाई दे रहे हैं।

नीचे लोग गिट्टी सर पर रखे हैं।

सामने एक तालाब दिखाई दे रहा है तालाब के किनारे ग्रिल लगी हुई है लोहे की।